इसमें एक पेड़ है और सामने की ओर दीवाल है।

इधर की ओर एक छोटा सा घर भी दिखाई दे रहा है।

जिस पे माला पहनाया गया है औ और माता में भी माला पहनाए गए--

ये एक दुकान है जिसमें कई रंग बिरंगे कई डिजाइन वाले शर्ट के कपड़े रखे गए है।

सामने की और एक कॉपी रखी गई है मेज पे हरा कलर का कुछ बिछाया गया है।

किनारे-किनारे बहुत सारे घर है। और पुरे फील्ड में लाइट जल रहा है।

ये एक टाइल्स दुकान है जिसमें बड़े बहुत बड़ा बड़ा टाइल्स है।

यहां पे बहोत सारे पानी नीचे है बहा हुआ भी है और पम पैंप है।

ऊपर की इधर एक आम है जिसमें मंजर लगे हुए हैं और घर के सामने बहुत से पेड़ है।

एक नीला कलर का शर्ट पहना हुआ है एक क्रीम कलर का शर्ट पहना हुआ है।

नदी के किनारे दो सीढ़ी है।